यह एक तालाब है इस तालेब में पानी भर गया है और इसके आजू-बाजू पत्थर है जिन पर सूखी घास उग रही है।

यहाँ पर एक चट्टान है और इस चट्टान के नीचे पानी भरा हुआ है एक बहुत बड़ा तालाब बना हुआ है और बहोत सारे पेड़ भी लगे हुए हैं।

यह एक अकेडमी की बिल्डिंग है जहाँ पर बच्चों को पढ़ाया जाता है।

यहाँ रायगढ़ के कलेक्टोरेट बैठते है जिला रायगढ़ छतीसगढ़ --

एह स्टेडियम गेट है इसके अंदर मैच होते है और किए जाते है यहाँ पर बड़े -बड़े टूर्नामेंटस भी होते है जैसे क्रिकेट वालीबॉल एह एक बहुत ही अच्छा स्टेडियम हैं।

यहाँ पर सभी प्रकार के फल फ्रूइट्स बेचे जा रहे हे जैसे केला अनार सेव सभी प्रकार के फ्रूइट्स बेचे जा रहे हे।

यात्रियों को सफर करने के लिए यह एक बस स्टॉप की तस्वीर है ।